सामने बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जो आर पार जो है हमें डिस्प्ले उसका दिखाई दे रहा है।

और ऊपर जो है नीले कलर का एक गैरेज के नाम नुमा जो है वहां पे दिख रहा है।

वाद्य यंत्र रखे हुए हैं जैसे गिटार है तबले है बाजे वगैरह है।

सामने एक रोड दिखाई दे रही है हमारे सामने रोड पे एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर है।

तोता ग्रीन कलर में हैं ये बोटल है इसमें पानी वगैरह भरा होगा।

यह एक लाल बॉक्स है इस चिट्ठी डालते हैं पहले जो है जमाने में क्या है कि चिट्ठी डाला जाता था डॉक घर पे--

यहां पे एक लोकल मार्केट लगता है फ्लाईओवर के नीचे--

और बहुत सारी बाइके जो हैं जगह घेर कर के खड़ी हुई है।

कोई बिग बाजार हमारे सामने नजर आ रहा है।

वो भी बहोत ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है।

कुछ लोग बेच रहे हैं कुछ खरीदने आई हुई है।

और अभी रात का समय है सामने यहां रात हो चुकी है रात में लोग यहां आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं।

आस पास अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट या जाम हो जाता है।

गुब्बारे से पीले रंग के गुब्बारे से सजाये गए है।

यह ये फोटो है यह फोटो जिम का फोटो है यहाँ पे बहोत सारी जिम की उपकरण रखे हुए है अंदर जो लाइटिंग है वो काफी खूबसूरत सा लग रहा है।

आकाश झूला है डिस्को डांस नाव वाला--

स्कूल से लेकर के जा रहे हैं काफी खूबसूरत ये माहौल लग रहा है।

ये जो अगला फोटो हमें प्राप्त हुआ है यह एक रात का समय है अभी एक घर का फोटो दिखा दिए हैं घर का जो एंट्रेंस है।

यह एक खेत का फोटो है यहां बहुत सारे क्यारियां लगे हुए हैं और ये क्यारियां--

तलाब बिल्कुल भरा हुआ है बहोत साफ पानी लग रहा है देखने से।